दुकाने दिख रहे है मास्क लगे हुए दिख रहे है सभी के लेडिस जेंट्स --

हम्म मकान दिख रहा है पीले कलर का उसपे दो-तीन टंकियां दिख रही है ब्लैक कलर की खिड़कियां में पिंक कलर दिख रहा है ग्रीन अ --

पत्तियाँ दिख रहीं हैं फूल लगे हुए दिख रहें हैं केक में पिंक कलर पीला कलर ब्लैक रेड जामुनी --

दिख रहा है बोर्ड लगा हुआ दिख रहे है उसमें मार्कर कली लगी दिख रही है कलर दिख रहे हैं पट्टी झूलें व --

इ दिख रही है बोरियां दिख रही है बहुत सारे फोटो तस्वीरें दिख रही है पीले कलर की दिख रही है नीले कलर की दिख रही एक बोतल रखी दिख रही है बुके --